यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छे लग रहे हैं लोग अच्छे से दिख रहे हैं।

ए मे जा रहा है ये भी बहोत अच्छे दिख रहे वहाँ पर नारियल पेड़ है उसमें जाने का मन कर रहा है वे बहुत ही प्यारे --

और यहाँ अच्छे से सजाए हुए है माला बेच रहे हैं और ये लोग बहोत अच्छे से दिख रहे--

--ए नजारे हैं यहाँ फुटबॉल खेलने जेसा दिख रहा है मैदान बहुत--